मुझे इस पिक्चर में कई सारा जूता रखा हुआ दिख रहा है।

बूढ़ा बैठा हुआ नजर आ रहा है।

एक स्कूटी पार्किंग करते हुए दिखा मिल रहा है।

दो ठो टायर दिखाई मिल रहा है और कई सारा कुछ रेंच दिखाई मिल रहा है।

मुझे इस फोटो में एक पोस्टर्स दिखाई मिल रहा है बिल्डिंग में टांगा हुआ।

और एक आदमी एक बस का आगे खड़ा हुआ देखने को मिल रहा है।

टेबल का ऊपर कुछ बुक्स रखा हुआ दिखाई मिल रहा है।

और उनके पीछे काले पर्दे एक ठो है दिखाई मिल रहा है और वाल में दो ठो फैन दिखाई --

एक छोटा सा एरो दिखाई मिल रहा है और।

बड़ा विंडो दिखाई मिल रहा है।

मुझे इस तस्वीर में कई सारा फादर बिशप नजर आ रहा है।

मशीन देखै मिल रहा है पोकलेन मशीन ।